आगे की ओर काफी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और कुछ बोऊणल्या भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक पुराना सा खंडहर बना दिख रहा है जिसके --